यह ऊपर छत दिखाई दे रही है सामने एक कांच का शीशा लगा हुआ है शीशे के अंदर रैक दिख रही है रैक में सामान रखा हुआ है एक मेज दिखाई दे रही है जो के सफेद रंग की है पिलर्स पर एक पोस्टर लगा हुआ है जो के नीले रंग का है अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

ऊपर एक बहुत बड़ा बोर्ड लग रहा है जिस पर लिखा हुआ है वह रेड रंग लाल रंग का है तार जा रहे हैं दुकान के बराबर में एक बिल्डिंग बनी हुई है जो के ग्रे कलर की है उस पर शीशे लगे हुए हैं नीचे मोटरसाइकिले खड़ी हुई है साइकिल भी खड़ी है और सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं।

का सिंहासन बना है जिसमें फूल लगे हुए है यह फूल नीले पीले लाल रंग के हैं और वह बैगनी रंग के भी फूल लगे हुए हैं यह गणेश जी बैठे हुए हैं इनका सिहासन दिखाई दे रहा है जो की गुलाबी रंग का है पीछे हरे-भरे पेड़-पौधे दिखाई दे रहै